जो आइसक्रीम लेने आए हुए है और एक अंकल --

जा रही है जिसका निरीक्षण हो रहा है यहां पर बहोत सारे बच्चे भी है।

इसके सामने तीन पिलर भी दिखाई दे रहें हैं।